अ सुन्दर डेकोरेशन किया गया है फूलो से और जिस तरह डेकोरेशन किया गया है बहोत रूम अट्रेक्टिव लग रहा है।

और बहोत अच्छा लग रहा है देखने में और लाइट फोकस किया गया है बहोत अच्छा लगा रहा है।

अ बैठने के लिए जहग है लोग बैठे हुए है बहोत अच्छा लग रहा है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ ये सुन्दर सुबह का समय है और सामने ये एक साइंस म्यूजियम है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ ये सुन्दर दोपहर का समय है सामने एक बड़ा सा जगह है।

जैसे की देख पा रही हु सुबह का समय है सामने एक बड़ा-सा दुकान है दुकान के अंदर बहोत सारा बुक है बुक्स के दुकान में--

अ जो बोहोत अ बड़ा दिख रहा है और बोहोत अच्छा अ सुन्दर --

जैसे मैं देख पा रहै है ये दोपहर का समय है और सुन्दर सा जगह है खुला--

और सामने एक नाव खड़ा है।

जैसे देख पा रहे है सुन्दर सा हॉस्पिटल का नजारा और हॉस्पिटल का अंदर का दृश्य दिखाया जा रहा है। ये समय नहीं पता चल रहा सुबहे की शाम है।

बहोत सुन्दर लग रहा है गेंदा फूल पीला कलर का है और एक एक कर के रखा गया है अ बहोत ही सुन्दर लग रहा है।

अ कुछ रखा गया है बहोत रकम का फूल यहाँ पे मिल रहा है।

जैसे की हमलोग देख रहे है ये शाम का समय है और शाम में अम सुन्दर अ म्यूजिक अ बैंड है यहाँ पे--

म्यूजिक ग्रुप है जो अम गाना परफॉरमेंस करने के लिए रेडी हो रहै है यहाँ पे तबला ढोलकी की पॉट --

और वो बिल्डिंग के सामने बालकॉनी निकला हुआ है और फर्श के चारों तरफ पेड़ है--